मुस्लिम मेनारल मेनारीटी कॉलेज भागलपुर का है।

ये माउंट जोन --

ये किराना का दुकान है। जिसमें बोर्नविटा सूखा दूध साबुन सरफ किचन धोने कपड़ा धोने वाला लगाने वाला साबुन है।